जिसमे महिलाएं भी शामिल है कई लोग खाने के लिए कतार पे लगे हुए हैं ऊपर पे पंखा लगा हुआ है।

महिला ने साड़ी पहनी है उ कत्था कलर की है और बच्चे को एक महिला ने पाये हुए हैं।

यह एक दुकान है यहां पे चावल की बोरी रखी हुई है।

पैसे दे रहा है और पेट्रोल पंप वाले से वर्कर से पूछ रहा है पेट्रोल पंप बहुत ही अच्छा है।

पेड़ की रक्षा करनी चाहिंए और उसे बचाने के लिए अथक प्रयास करने--

कपड़े बहोत अच्छे लग रहे हैं और जो लेडिस --

जरूरी है काले बादल छाए हुए हैं।

यह एक रूम है रूम पे ए_सी लगा हुआ है नीचे पे--

सभी दृश्य देख रहा है एक व्यक्ति जो हाथ पे कागज पत्री चिट्ठी लिखा हुआ रखा हुआ है वह निरीक्षण करता हो सकता है।

कच्ची मकान जैसे दिख रहे हैं कालम खड़ी हुई है खुर्सी रखे हुए हैं।

मिलेगा मॉल पे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं जो खरीदारी करने के लिए और घूमने के लिए आए हुए--

यह एक ढाबा का दृश्य है ढाबा का नाम है हाईवे फैमिली ढाबा।

और अंदर में लोग खाना वाना खा रहे होंगे।

यह एक कपड़े का शोरूम लगता है यहां पर बहुत सारी कपड़े रखे हुए हैं कपड़े जींस पैंट पैंटी बहुत सारे बेल्ट रखे हुए हैं।

से फोटो खिचवा रहे हैं पीछे बाढ़--

बाढ़ आ रही है वैसा दिख रहा है।